और यहां पे हरी भरी घास उठी हुई यहां पे अंदर काफी जनवरा भी है।

गार्डन दिख रहा यहाँ पे कमान बनाई गई --

का रूम दिख रहा है बड़े बड़े यहाँ --

आह यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आजू बाजू यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े झाड़ा भी दिख रहे हैं।

ये एक यहां पे मिनारा दिख रहा--

सामान रखा हुआ है टिशू पेपर भी--